और यहाँ देख सकते हैं की चर्च जैसा है ।

और गोल्डन मछ्ली है और यहाँ छोटी- छोटी मछलियाँ भी बिक रही हैं यह बहुत सुन्दर दिखाई देती हैं ।

इ शादी का मंडप है। ये मंडप बहुत बढ़िया सजाया हुआ है। डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ |

शंख का बना हुआ भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ गोल्डन कलर से रंगा हुआ है फूल भी है।

और ग्रिल लगी हुई है शटर बंद है और देख बगल में दुकान खुली है बीच में रास्ता है जाने का ।

यह देख सकते हैं बहुत सुन्दर सरकारी ऑफिस है यहाँ पे देख सकते हैं इसके बोर्ड पर लिखा हुआ भी है ।

फिर डेकोरेशन काम बहुत अच्छा है ये चार मंजिला फ्लौर पे बना हुआ है। इसके आस-पास बहुत साफ़-सुथरे सफाई है। लोग यहाँ --